यह चित्र एक मार्केट का लिया गया है।

इसमे इसका अड्रेस लिखा हुआ है उनंत उर्दू मद विद्यालय जिसका नाम है ये पिपरा इसका अड्रेस है।

बगल में एक विवो का एड का दिया हुआ है।

जो की लम्बा हॉल है इसमें बहुत सारे लोग हैं।

वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है।